माध्यमिक की डिग्री प्राप्त होती है और यहां से कुछ --

पार्क बहुत हरा-भरा है और यहाँ के लोग यहाँ आकर बइठे हुए है और यहाँ --

बइठे हुये है और आस-पास एक अच्छी वातावरण है जहां की --

यह श्री राम हॉस्पिटल है और श्री राम हॉस्पिटल बड़ा सा बिल्डिंग है जो कि बोहोत सारे सिलेंडर लगा हुआ है।

यह एक कमरा है इसमें बहुत सारे फोटोज लगे हुए है और कुछ लाइट और कैमरे है और यह एक रूम है।

ऐसा ही प्रतीत हो रहा है।

में पानी है और देख के बहुत ज्‍यादा टेस्‍टी लग रहा ।

और यह एक शादी का माहौल लग रहा है और यहाँ सभी लोग --